कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं आसमान बिल्कुल साफ-सुथरा और सुंदर दिखाई दे रहा है यह द्रश्य देखने पर काफी ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है।

और ये जो मूर्ति है मुझे यहां पर ये मूर्ति अपने भगवान जी से बिलॉन्ग करते हुए दिखाई दे रही हैं और ये ज्यादा काफी ज्यादा सुंदर और अच्छी मूर्तियां दिखाई दे रही रही हैं यहाँ पर मुझे बल्ब भी लगे दिखाई दे रहे हैं और ये देखने में काफी ज़्यादा सुन्दर दिख --